और इस कॉलेज में बहुत सारा फील्ड है और ग्रीन ग्रीन पेड़ है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।

और दौड़ने के बाद बहुत सारे लोग आराम कर रहे हैं यहाँ पे बैट बॉल चल रहा हैं बेट बॉल लोग खेल रहे हैं।

और इस झूले में लोग बैठ के मस्ती कर रहे हैं और यहाँ पे दो लोग हाथ मिला रहे हैं। कुछ लोग मेले में घूम रहे हैं। मेला बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में।

फोर जी के सिम निकल गए है आईडिया फोर जी और ये सब बहुत ही अच्छा है --

ये एक प्लेट है प्लेट ब्लैक कलर का है प्लेट मे खाना रखा हुआ है प्याज पनीर नींबू और सारा खाना भी है।

और मिट्टी निकल रहा है जे.सी.बी. येल्लो कलर का है जे.सी.बी. बहुत बड़ा है मिट्टी बहुत निकल गया अभी खुदाई बहुत लम्बा होने वाला है।

और ये जिम क्लब है क्लब बहुत बड़ा है और मशीनें तीन-चार हैं दिखने में अच्छा लग रहा है ये क्लब ।

यहाँ खेत है खेत में धान रोपा गया है और खेत में पानी भी लगा हुआ है और खेत में पेड़ भी हैं।